यह एक मेज भी दिख रही है।

मेज के ऊपर एक फूल भी धरा हुआ दिख रहा है।

यह एक मीटर भी लगा हुआ दिख रहा है।

यह एक रेडा भी दिख रहा है।

यह मास्टर खड़ा हुआ दिख रहा है।

यह एक छोटे पेड़ भी दिख रहे है।

यह एक नाली भी बनी हुई है।

यह खड़े हुए बच्चे भी दिख रहे हैं।

यहां मेज भी दिख रही है।

यह एक आदमी फोन पर बात कर रहा है।

यह एक फ्रिज दिख रहा है यह एक थैला भी दिख रहा है।

यह एक लाइन का तार भी जा रहा है।

यह एक शिशा भी दिख रहा है।